यहाँ बहोत सारे बच्चे लोग डांस कर रहे है वहाँ लेडिस लोग भी है।

यहां पस बेग बस्तल रखाये हुए हैं।

यहां बहोत सारे एक्टिवा और बाइक नजर आ रहे हैं मेरे को।

यहां शो पीस टी_वी भी लगे हुए हैं डाइनिंग टेबल बैठने के लिए भी है कुर्सी लो--

नीचे में वॉलपेपर पीछे हुए हैं।

ये स्कूल में बहुत सारा खिड़की भी लगी हुई है।

सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं।

और ऑरेंज पे कलर किए हुए है लाइट लगा हुआ है पानी फिल्टर लगे हुए है।

यहां बहोत सारे रूम भी नजर आ रहे हैं।

यहां एक सिटी नजर आ रहे हैं मेरे को।

यहां पार्क भी बना है छोटे से--

जो बहोत सारे पेड़-पौधे भी नज़र आ रहे है यह रंग-बिरंगे के फूल भी दिख रहे है यहाँ बहोत सारे लोग नहाते दिख रहे है।

यहां एक व्यक्ति सीढ़ी चकते हुए ही नजर आ रहे हैं मेरे को--

यहां एक लैट्रिन खुली नजर आ रहे--

यहाँ एक बड़ा सा बोर्ड नज़र आ रहे मेरे को बहोत सारा कपड़ा भी नज़र आ रहा है मेरे को --

यहां एक ढाबा नजर आ रहे हैं मेरे को।

यह एक मुझे कुछ खंभे में नजर आ रहे हैं मेरे को--

यहां एक छाड़ बंधाए हुए नजर आ रहे है मेरे को।

बड़ा सा खंभा नजर आ रहे हैं यहां कच्ची रोड भी नजर आ रहे हैं।

यहां एक जगन्नाथ भगवान नजर आ रहे मेरे को यहां एक शेर नजर आ रहे हैं मेरे को।

यहां मेरे को एक बेडशीट भी दिखाई दे रहे हैं एक टोपी भी दिखाई दे रहे है।